यहाँ पर दो बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक तालाब दिखाई दे रहा है।

जिसने सफेद शर्ट और लूंगी पहनी हुई है।

दो ने सफेद शर्ट पहनी हुई है।

एक बस नजर आ रही है जिसका रंग लाल है।

उसके पास एक बैग रखा है जिसका रंग सफेद है।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

ऑफिस में कांच की खिड़कियां हैं।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

बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर परियोजना निदेशक लिखा है।

इस चित्र में हमें एक हल्की मोटर दिखाई दे रही है जिसमें पांच पंखड़ी हैं यह सुरमई रंग की है।

पीछे हमें एक साइकिल दिखाई दे रही है जमीन पर थोड़ा सा पानी पड़ा है।

एक हमें नारियल का पेड़ दिखाई दे रहा है।

जिस पर तरुण ट्रेडर्स लिखा है एक बिजली की डीपी नजर आ रही है।

मस्जिद के आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हैं।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

जिसको लाल रंग के फुग्गों से सजाया गया है।

जिसका नाम मेडिकल कॉलेज एंड जे _के हॉस्पिटल है।